अंदर एक लाइन से गमलों में फूल पौधे लगाए हुए हैं।

इस फोटो में एक ठेला है।

नीचे में एक फाउंटेन बनाया गया है।

रेख का रंग नीला है जोकि बहुत बड़ा बड़ा है।

इस फोटो में एक बहोत ही बड़ा सा पहाड़ है और सामने एक वॉटरफॉल है।

सामने से धूप की रोशनी दिख रही है आसमान पूरा नीला है।

सभी ने लाल और नीले रंग का साड़ी पहना है।

इस फोटो में एक बड़ा सा दुकान है इसका रंग सफेद है।

नीचे दो दो कीबोर्ड है और एक सी_पी_यू पूरा काला है सामने एक बड़ा सा टी_वी है।

एरोप्लेन का रंग पूछ का रंग उसका लाल है।

इस फोटो में एक वॉटर फॉल है।

नीचे के दीवाल का रंग नीला है।

रूम के अंदर ऊपर में भी रेक बना है उसपे भी बहोत सारा डब्बा है।

रूम के अंदर एक लकड़ी का टेबल है।

इस फोटो में नीचे कई सारे बैठने के लिए चेयर है जिसका रंग पीला ऑरेंज और काला है।

बहोत सारे प्लांट भी है सामने हरा रंग का डस्टबिन है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉल है।

और पीछे एक झोला है और एक लाल रंग की लंबी सी तार है।

टेबल पे बहुत सारा पोस्टर चिपका है।